कार्यालय कलेक्टरेड रायगढ़ छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है ।

लाल कलर में ब भारतीय डाक लिखा हुआ है।

यह बंगला दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई है और कुछ लोग भी हैं।